यहाँ एक इमारत दिख रही है।

उसमें पौधे लगाए गए है।

यह एक हॉल के अंदर चित्रित --

यह मॉल का एक रो है।

और एक तरफ बिना पलस्तर कि दीवार दिख रही है।